यहां पर दो चम्मच भी रखे गए हैं पुलाव का--

और यहां पर हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।